इसमें झालर लगाए हैं पेट्रोल में और पेट्रोल भरा जा रहा है।

एक महल जैसा डिजाइन किया गया है ये एक पत्थर से बना हुआ --

ये लोगों अभी मूर्ति है देवी दुर्गा सरस्वती ऋषि मुनि साई भगवान और --

मीम के आवाज है गराज में गाड़ियों का रिपेरिंग किया जाता है इसमें बहुत सारे गाड़ियाँ आती है और बहुत सारे मैकेनिक करते है जो गाड़ियों को रिपेयर करते है।

गार्डन है गार्डन में पौधा लगा हुआ है और ज्यादा ठंडा है। यहाँ पे आठ लोगों का मूर्ति बना हुआ है। वो सिरे पे बैठे हुए हैं और बीच-बीच में पेड़ भी लगे हुए हैं|